शॉप है सलून हैछोटा सा सलून है जो एक ब्लेक कलर का अ अप्प्रैन पहना हुआ है और चेय-चेयर रखी हुई है।

जहां ये लड़का खड़ा हुआ है वहा सूनसान रोड है वहां कुछ चल नहीं रहा है।

और जोकि एक पानी में खड़े हैं जिसे नहर के किनारे ऐसे खड़े हैं। पीछे नाव है जोकि लकड़ी की है। एक लम्बा सा बांस लिए एक आदमी उस नांव में खड़ा हुआ है।

है जोकि एक लगा हुआ है जोकि यहाँ पे आदमी बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्क पेहना हुआ है।

ऊपर छत पर और काफी सारी मशीने रखी हुई हैं बोहोत सारी मशीने हैं | जगह जगह पर अपनी जगह पर एडजस्ट कर रखा है जैसे कि बाहर का जो एरिया है मतलब शीशे पर परदे लगे हैं।